एक लेडिज और एक जैंट्स दिख रहे हैंदूर एक मोटरसाइकिल दिख रही हैकुछ का कालम दिख रहा है।

नीचे के पानी-सा जमीन में पानी है। यहाँ एक लेडीज पीले कपड़े पहने हुए खड़ी है और कुछ सफ़ेद से पाउच र --

कुछ एक हनुमान की फोटो है नीचे बिछी हुई है। हरे से कलर की और --

यहाँ एक कुछ ऊंचा सा स्थान कुछ टेबल वगैरह हैं। पत्थर या सीमेंट के कुछ छोटे-छोटे डिजाइन वाले पत्थर बने हुए हैं।